अ देखिए की यह एक मकान है इसके यहाँ कुछ मट्टी सी लगी हुई है। इधर मे एक कुछ चबूतरा सा दिखायी दे रहा है।

और नीचे स्टाईल भी लग रही है और यह डिब्बी से भी दिख रही है इधर कुछ सरिया से भी दिखाई दे रहे हैं उधर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह देखिए कि यहाँ एक बातचीत कर रहे यह आदमी और यहाँ पर एक कुहार भी है और वहाँ पर भी है। यहाँ पर कुछ चढ़ने के लिए सीढ़ी भी हैं।